इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहां पर एक--

इस तस्वीर में दिखाया गया यहा पे स्पेश लिखा गया है और ऊपर लाइटिंग --

एक पेड़ पौधे से लगा हुआ कुछ झाड़ियां दिखा रखी--

इस तस्वीर में दिखाया गया है की यहां पे एक स्टोअर लगा रखी है।

लोहा गडा हुआ है और एक व्यक्ति इस पे काम कर रहा है छत के ऊपर--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

ट्रक की पूरा आगे का हिस्सा टूटा हुआ लग रहा है।

जिसमें कुर्सी वगैरा भी रखी गई हैं यहां पर दिखाया गया है कि कुछ लाइटिंग से कुछ बना रखा है।

व्यक्ति जिम कर रहे हैं यहां पर कुछ व्यक्ति मशीन के साथ हैं।

ये फिर दिखाया गया है कि ये एक होल्डर वगैरह डालने की मशीन लग रही है।

और यहां पे एक दिखाया गया है कि पीछे ईंटो से बना हुआ घर है।

चौबीस घंटा यह खुला रहता है कोड पर लिखा गया है।

इस तस्वीर में दिखाया गया है। अरविंद नाम से एक हॉस्पिटल दिखा रहा है जिसमें बहोत ही सारी मोटरसाइकिल भी आगे खड़ी हुई है।

यहां पर एक लाइट भी जल रखा है ये दो तीन मंजिल बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।